जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं एक अच्छा सा हार्ट शेप में बहुत ही अच्छा लाइटिंग करी हुई है जो कि आधा हार्ट दिखाई दे रहा है।

बोर्ड लगा हुआ है सफेद कलर का गेट लगा है आगे पैनल --

हम बहुत सारी ज्वेलरी डिस्प्ले करी हुई है और गोल्ड की ज्वेलरी दिखाई दे रही है बहुत सारे लोग--

नेल पेंट रबर बैंड बहोत तरीके के अलग-अलग कलर्स भी रखें--

सुनहरी कलर के बनाए गए हैं और उसको लंबा चौड़ा बना है पीछे से एक बिल्डिंग है जो काले कलर की दिखाई दे रही है।

जैसा कि आप देख रहे हैं एक हरी भरी नदी दिखाई दे रही है उसके दाएं तरफ बहुत बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं और उसके सीधाई में बहुत दूर तक--

और एक पुरानी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि बहुत ही पुरानी दिखाई दे रही है।

अ और एक लाल कलर की दीवार दिख रही है उसके ऊपर काले कलर की ऊं ल रेलिंग लगी हुई --